जिसके बाहर झंडे लगे हुए हैं और ऑरेंज कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी नजर आ रहें हैं।

इंस्टिट्यूट के सामने हरे-भरे पेड -पौधे लगे है नीचे की जमीन सुखी हुई दिखाई दे रही है और दीवारे सफेद कलर की दिखाई दे रही है।